चद्दर सेट के सामने एक डी.पी. लगी हुई है जिसके पास में एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ है और एक रोड है।

और करीबन पर तीस चालीस अनार रखे हुए है और कुछ काले अंगूर रखे हुए है और केले भी रखे हुए है और संतरा भी रखे हए है।

यहाँ पर आस-पास सब जगह हरियाली है और इधर कोने में एक हैल्मेट रखा हुआ है ।

यहाँ पर टेबल पर एक व्हाइट कलर के थाली में तीन-चार आलू के पराठे दिखाई दे रहे हैं और यह पके हुए हैं।

यहां पर कुछ रेड्स कुछ ब्लू कलर की शर्ट पहने हुए लोग रनिंग कर रहे हैं।

यहाँ पर सामने काउंटर रखा हुआ है जिस पर तीन आदमी हाथ रख के खड़े हुए है और काउंटर के साइड में एक ब्लू कलर का लक्कड़ का दरवाजा है।

यहां पर एक पुरानी फॉर व्हीलर पड़ी हुई है जिसमे दो तीन व्यक्ति बैठे हुए है और यह कार आगे से पूरी खुली हुई है।

उधर से एक आदमी आ रहा है और साइड में एक घर दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर एक प्लस का आइकान है जिस पर एक आदमी टंगा हुआ है और उसके दोनों साइड नीचे छोटे-छोटे गुलदस्ते रखे हुए हैं।

और यहाँ पर कुछ पानी भी भरा हुआ है और इधर एक कोने मे छोटा सा खजूर का पेड़ दिखाई दे रहा है और कुछ छोटे-छोटे --